इसमें नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा है और यह दूर की ट्रेन है।

ये खेत में हल करता है। हल जोतता है। यह ट्रैक्टर काफी खेतो में काम आता है। इसके ऊपर बादल हैं और इसके ऊपर पेड़ हैं।

गहरे ब्राउन कलर का बकरा सफेद कलर का बकरा डार्क ब्राउन कलर का बकरा दिखाई दे रहा है और सामने की तरफ पेड़ हैं ।

यहाँ एक स्टेशन पे चलने वाला पुल है जो कि इधर से उधर यात्रियों को ले जाता है यहाँ पे सामने ट्रेन आतेने के लिए एक नंबर और दो नंबर पे जाने के लिए ये काम आता है।

यहाँ पर लकड़ी का लकड़ी का एक वो बना है जिसमें किताबें रखी हैं यहाँ पर सब पढ़ते हैं। यहाँ पर आवाज नहीं किया जाता है। यहाँ पर कई तरह की --

किताबे रखी हैं यहाँ पर शांति से बैठा जाता है और यहाँ पर आवाज नहीं किया जाता है और यह एक पुस्तकालय घर है जहाँ पर खाली पुस्तके बिकती हैं |

इनमें से एक की कारपेट का कलर बैंगनी एक की पिक और एक की ऑरेंज है।

कि दुकान का नाम तेजा बुक है और यहाँ पर एक लड़की बैठ के एक चच्चा से बात कर रही है।

और यह लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और यह जाली से दिखाई दे रहा है या किसी को घूर रहा है और इसके ऊपर पेड़ भी लगा है। जिसके हरे हरे कलर की पतिया दिखाई दे --